कलेंडर दिखाई दे रहा है। किताब दिखाई दे रहा है। एक बाहर बोर्ड दिखाई दे रहा है। एक बाज दिखाई दे रही है।

केला दिखाई दे रहा है। ठेला दिखाई दे रहा है। पेड़ दिखाई दे रहा है। बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं। सेब दिखाई दे रहा है।

मंदिर दिखाई दे रहा है। बाइक दिखाई दे रहा है। पेड़ दिखाई दे रहा है। अशोक का पेड़ दिखाई दे रहा है।

लकड़ी दिखाई दे रही है। जंगल सा दिखाई दे रहा है। सुखी पत्तियाँ गिरी हुई दिखाई दे रही हैं।

बेड दिखाई दे रहा हैं। बेड के ऊपर गद्दा है टुटा फुटा है। बड़ी बड़ी मशीन दिखाई दे रही है।

बेकर्स की दुकान है। बाइक दिखाई दे रहे है। स् सीकूटी दिखाई दे रही है। बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है।